जहां उसके सामने हरे रंग के जाड़ है।

यहां पर एक टीवी लगी हुई है।

यहां पर बहुत से आदमी लोग हैं।

इधर एक बड़ा सा भी झाड़ है।